मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में पेड़ दिख रहा है गेट दिख रहा है डस्टबिन दिख रहा है।

रोड दिख रहा है और मुझे इसमें रेलवे ट्रैक दिख रहा है और मुझे इसमें उन बिल्ड बिल्डींग में विंडो दिख रही है।

इसमें मुझे एक घर दिख रहे है इसमें मुझे रेलिंग दिख रही है इसमें मुझे एक रस्सी दिख रही है जिसके ऊपर कपड़े टंगे हुए है ऐ एन्ड इसमें मुझे वाईट कलर का--

अ सूरज दिख रहा हैं मुझे इसमें एक डंडे रखे हुए दिख रहे हैं इसमें मुझे--

इसमें मुझे बाइक दिख रही है इसमें मुझे टाइल्स दिख रही है इसमें मुझे लाइट दिख रही है ए -एंड में मुझे चेयर्स दिख रही है इसमें मुझे फैन दिख रहे है ।